अच्छा और नया दिखाई दे रहा है सामान काफी व्यवस्थित तरीके से जमाया गया है एक कुर्सी भी लगी हुई है ।

पहाड़ नज़र आ रहा है पहाड़ पे हरयाली नज़र आ रही है पानी ठहरा हुआ लग रहा है आसमान नज़र आ रहा है।

आस पास कई पेड़ बड़े बड़े नजर आ रहे है हरे भरे नीचे पत्तिया पड़ी हुई है सुखी --

सजाया गया है और और एक महिला और एक बच्चा खड़े हाथ जोड़ के खड़े हुए है।

रंग बिरंगी कुर्सियाँ रखी हुई है सामने काफी पेड़ लगे हए है वाहन खड़े हुए हैं।